एक फोनपे का क्यूआर कोड लगा हुआ। बहुत सारे डिब्बा भी है और इसके सामने आदमी भी बैठा हुआ है। चेयर मे टिफिन में रखा हुआ है।

एन्ड ड्रॉयर है एन्ड एक लोग खड़ा हुआ है फैन है लाइट है एन्ड यहाँ पर एक अलमारी भी है।

एंड पीछे में पेड दिख रहा है ऐंड और पास में एक बस दिख रहा है।

एक बिल्डिंग दिख रहा है उसके नीचे एक बैंक का बैनर लगा हुआ है जो कि लिखा है एच.डी.एफ.सी.बैंक

यहां पे बहुत सारा उमम फ्लावर है एंड यहां पे फ्लावर है सुज्जमुखी सब कुछ फूल हैं ऐंड इसके सामने बहुत सारा फूल रखने के लिए डब्बा है।

एंड यहाँ पर हमीरपुर लिखा हुआ है प्राइमरी हेल्थ सेंटर लिखा है हिंदी में लिखा है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र‌। एंड बहुत सारे ग --

यहाँ पे बोहोत सारा फूल है। यहाँ पे माला है एण्ड यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है जिसमे लिखा हुआ है एच एस आर ।